अलग-अलग पैकेट में अलग-अलग बॉक्सेस पैक किया हुआ टंगा हुआ है.

यहां पर सड़क पर एक बिल्डिंग से दिख रही है सामने उसके सामने--

यहां पर कुछ परफॉर्मेंस चल रही है ऐसा लग रहा है.

सामने पीछे पर्दे लगे हुए हैं और साथ में कुछ खिड़कियां भी है और सामने एक आदमी खड़ा होकर कुछ भाषण देर दे रहा था उसके साम उसके साथ--

दो-दो चार ठत्ता खिड़क पर भी कर्टेन लगे हुए यहां पर एक लड़की बैठकर योगा कर रही है अपने पैरों को ऐसे पकड़ रखा है.

यहां पर इसे अलग सुंदर तरीके से जाया यहां पर लाइट लाइट जैसे यहां पर--

झूमर लगा हुआ है झूमर में मैं लाइटे ही लाइट है और यहाँ पर हर तरफ कर्टेन ही कर्टेन --

नज़र आ रही है उधर बारीक़ खंबा भी लगा हुआ है जिसके वायर्स लटक रहे है.

यहां पर ऊपर एक बोर्ड पर लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय नंबर फोर --

जालिया से लगी हुई है शैटर जैसा लग रहा है तो यहां पर एक आदमी खड़ा होकर अपना काम कर रहा है.

यहां पर एक रथ को अच्छे से सजाया हुआ है उस जिसके अंदर एक भगवान जी की मूर्ति और उसके बाहर बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

जिन्होंने अपने हाथों में कुछ ना कुछ बाजी वगैरह समान पकड़ रखा है.

यहां पर एक यह एक पैलेस नजर आ रहा है जिसको बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों से--

और कुर्सियां पड़े तथा यहां पर इससे इतना सुंदर जाएगा कि हर तरफ लाइट ही लाइट दिख रही है नीचे हर तरफ घास ही घास फैला हुआ है.

अंकल की लंबी-लंबी लड़ियों वाली घास से लटक रही है नीचे बहुत सारे आदमी खड़े हैं को कोई तो सेल्फी क्लिक कर रहा है तो कोई फोटो क्लिक कर रहा --

इसका गेट खुला है दो-तीन आदमी गेट के बाहर खड़े हैं दो-तीन गेट के बीच में और एक आदमी--

यह कोई मंदिर नजर आ रहा है जिसमें मंदिर के अंदर एक भगवान जी की कोई मूर्ति--

ओ चमकीली वाली लड़ाई तथा ऊपर एक पेड़--

यह कुछ स्टेशन वाला कोई रूम से लगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है गुप्ता--

यहां पर दीवार बहुत पोस्टरी पोस्ट लगाया तथा उसके बाहर गमले पड़े हैं पांच सात और साथ में यहां पर स्कूटियां वगैरह भी खड़ी है और बाहर अंतर गमले दिख रहे हैं जिसमें खिड़क लगी हुई हैं.

यह कोई कपड़ों की दुकान लग रही है जहां पर हर तरफ ज्यादातर लाल कलर का ही कपड़ा ही कपड़ा पड़ा है.

यहां पर हर तरफ पानी ही पानी फैला हुआ है यहां पर बीच में दो तीन दो पत्थर भी बड़े हैं एक ब्लैक और वाइट --

जो हर बुक्स यहां पर माता रानी की बुक्स भी मिल रही है और यहां पर हर बुक्स पड़ी है यहां पर मोस्टली बुक्स में पर रेड रेड कलर की दिख रही है पीछे बहुत सारा सामान जचा हुआ है।

एक गेट लगा हुआ है जिसका एक गं गेट बंद है कांच और एक गेट खुला है.

उसका ऊपर काफी प्लस की टाइप का बहुत सुंदर लग रहा है यहां पर बहुत यहां पर बहुत सारे आदमी व औरतें खड़ी हैं.

उसका गेट बंद पड़ा है जिसके आगे चार लिखा हुआ है.

उसपर पर लिखा हुआ है काउंटर नंबर वन काउंटर नंबर टू काउंटर नंबर थ्री काउंटर नंबर टू पर एक आदमी बैठा हुआ है बिछे मुँह कर के बोर्ड की तरफ --

वॉल पर तीन पिक्चर्स लगी हुई यहां पर कुछ बुक्स और एक लैपटॉप वगैरह भी नजर आ रहा है.

यह एक कनफेक्चर की दुकान लग रही है जिसका शर्टर खुला थोड़ा सा ऊपर से बंद है यहां पर बहुत सारा सामान टंगा हुआ है.

यहां पर बिल्डिंग दिख रही है जिसमें लाइटें ही लाइट चस रही हैयहां पर हर तरफ ऊपर को साइड ऐसा नजर भी आ रहा है और यहां पर लाइट ही लाइट की रोशनी है.

और यहां पर पैड़ियां भी है यहां पर पेड़ वगैरह भी पड़े हैं और सब यहां पर सजा कपड़ हर तरफ की हरी हरी गास फैकली हुई है.

यह एक स्टेशनरी की दुकान है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मानसव स्टेशनरी तो नीचे बोर्ड पर कुछ भी कुछ लिखा हुआ है.

यहां पर हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी फैली कुछ छोटा यहां पर सामान पड़ा है पत्थर वगैरह पड़े है यहां पर एक आदमी खड़ा है.